मुझे यहां पर नकली फ्लावर्स दिख--

काउंटर रखा हुआ दिख रहा है जहां एक अंकल का--

बलून से डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा है जिसके अंदर कुछ--

प्रोफे सोफा कुछ दिखाई दे रहा है जिसके सामने टेबल पर--

दुकान के अंदर एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां एक लड़का खड़ा हुआ दि--

सही है ईश्वर के पास एक वाइट कलर का पंख लगा हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक शॉप दिख--

दिखाई दे रहा है फोकेस के अंदर कुछ कै--

जिसके बाहर कुछ दिखाई दे--